बहुत सारा सामान भी रखा हुआ है और घल है हरा कलर का है पिंक कलर का है।

ईहां एगो व्हाइट कलर का गाड़ी खरा हुआ है और उहां एगो ब्लू डेंट हाउस भी है।

यहां मोटर साइकिल के शोरूम है और ये कितना सारा सुंदर-सुंदर बुलेट रखा है।